मेम सभी का निरीक्षण कर रही हैं देख रही हैं।

जैसे कि आप देख सकते हैं की यह एक गौशाला है जहाँ --

और यहां पे एक फ्रूट का ठेला भी दिखाई दे रहा है।

जहाँ लोग घुमने आए हैं फोटोस वैगरह क्लिक कर रहे हैं।

यहाँ एक नदी दिखाई दे रही है ये शायद गंगा नदी है।

जैसा की आप देख सकते हैं --

कुछ सामान अपलोड किया जा रहा है कुछ उतारा जा रहा है।

यहाँ पे एक अंकल भी खड़े हुए हैं | एक आंटी और एक छोटी सी बच्ची है।

जहां पे स्पोर्ट के लिए काफी सारी लकड़ियां लगाई गई है।

वो राधाकृष्णन सभा भवन के नाम से है।

जहां काफी सारे वर्कर काम कर रहे है।

फ्रेंड्स वगैरा हैं भी हैं पर यहां पे --

प्रतियोगिता चल रही है सब ने अपनी-अपनी दुकान खोली हुई है।

यहां पे बिजली की व्यवस्था भी है।

यहाँ पर दो लोग भी हैं जो एक बाउंड्री में बैठा और एक साइकिल में ।